यख मा जी हैंड पंप कर छ दिखेण लग्युं यख समणी एक इमारत छ दिखेणी या इमारत दिखणम विद्यालय छ लगणु यख फण कई सारा हरयां भर्यां डाला भी छन।

चित्र का अनुसार यख मा जी जु छा हम ते एक बड़ु बारिकु कमरा कर छा दिखेण लग्युं।